और यहां पर बहोत सारे बच्चे खेल रहे हैं।

इस पिक्चर में नजर आ रहा है।

ये एक बहोत बड़ी--

और यहां पर एक--

प्लांट लगे हुए हैं ये--

मन्दिर है यहां पर बहोत सारे--

एक बहोत सुंदर सा पार्क है यहां पर बहोत सारे--